और एक बड़े पेड़ और पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं ।

इस तस्वीर में हमें एक सफेद कलर के बोर्ड पर लाल व नीले अक्षरों से लिखा हुआ दिख --

तस्वीर में हमें एक बहुत सुंदर सी नदी दिखाई पड रही है जिसमें कुछ व्यक्ति खेलते हुए भी दिख रहे है।

यहाँ पीछे कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे है कुछ दूरी पर कु --

कुछ व्यक्ति हैं कुछ महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है और टी.वी. भी दिख रही है लाल रंग की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं ।

एक बड़े सा हॉल में बहत सारी लाल रंग की कुर्सियां है जिस पर --

कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं किसी ने कुछ खिलौने रखे हुए रखे हुए दिख रहे है।

नीला-नीला आसमान भी दिखाई पड़ रहा है।

सीटें दिखाई दे रही है बहोत सारे खिड़कियाँ भी नजर आ रही है जिनके आगे नीले पर्दे लगे हुए दिख रहे --

पीछे एक जिम की मशीनें दिख रही है नीचे की जमीन पर।

यहां कुछ टेंट भी लगे हुए हैं यहां कुछ झंडे भी लगे नजर आ रहे --